यह चित्र है एक अ एक तालाब का जहा पे एक आदमी पत्थर पे बैठा हुआ पाणी के पे अंदर पैर डाले हुये--

ये चित्र एक जिम के अंदर का है। जहा एक लडका वर्जीश करते हुये दिखाई दे रहा है और बहुत सारी मशिने नजर आ रही है कमरे के अंदर।

ये चित्र है एक दुकान के बहार का जहा सब्जीया कि बोरीया दिखाई दे रहे है जिसमे प्याज आलू और लसन दिखाई दे रहा है दो आदमी अंदर लुंगी पहने बैठे दिखाई दे रहे है।

यह चित्र है। एक चर्च की जहा पे कई लोग चर्च के अंदर खड़े हुए फोटो खिचवाते दिखाई दे रहे है। पीछे दीवार पे --

रर कुछ बोल रही है माईक पे कई बच्चे खुर्चीयो पे बैठे हुये अपने अपने अलग अलग वस्तू ओ के कपडे पहने दिखाई दे रहे है।

ये चित्र है। एक मैदान का जहा पे एक वहा बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहा है।

ये चित्र मे हॉस्पिटल के अंदर कई मरीज खडे हुये है मुँह पे मास्क लगाये हुये और रिसेप्शन के बहार खडे हुये दिखाई दे रहे है और कुछ औरते बैठी दिखाई दे रही है।

ये ये नाव चलाते हुए दिखाई दे रहे है पा पाणी मे पेड भी दिखाई दे रहे है पाणी का रंग हरा दिख रहा है।

और पेन और बहोत सामान दिखाई दे रहा--

जे एक चित्र है जिसमे कि एक कांच है और दो और दो दो कुर्सिया दिखाई दे रही है।